बैंक के बाहर बहुत सारी बाईकें खड़ी है।

और सामने एक खूबसूरत नजारा भी दिख रहा है।

यहां पर सोफे रखे हुए है और सामने टेबले लगी हुई है टेबलो पर सफेद रंग का कपड़ा लगाया गया है।

यहां पर एक सेंटर लगा हुआ है जो की स्टील का बना हुआ है और एक बॉल भी रखा हुआ है जो लकड़ी का है।

ये एक स्टेज पर खड़ी हो रही है स्टेज का रंग काला है ऊपर कुछ लाइटें भी जल रही है और ये किसी ग्राउंड में हैं।

यहां पर रात के समय की फोटो है यहां पर बहोत सारे फायर ब्रिगेड के समान भी रखे हुए हैं आग बुझाने के सामान देखें रखे हुए हैं।

पानी का कैंटर भी रखा हुआ है सामने एक फ्रिज लगा हुआ है जिसमें कोल्ड ड्रिंक रखी हुई है।

यह फोटो एक पार्क की है।

एक एक गुरुद्वारे की सेवा समिति की है।

पास में बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ भी लगे हुए हैं और सामने एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है जो कि दो मंजिला है।

और सामने बहुत सारे लोग बैठ कर इसको देख रहे हैं यहां पर अलग अलग तरह की लाइटें जल रही है।

और पास मे एक दुकान दिखाई दे रही है।